ये एक बुक सेंटर है जहाँ पर बहु सारी रंग बिरंगी बुक दिखाई दे रही हैं।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

कुछ बच्चे एक हॉल में एक्सरसाइज कर रहे है और इस हॉल का रंग व्हाइट है।

यहाँ पर एक बड़ा सा चैनल गेट दिखाई दे रहा है और उस चैनल गेट के ऊपर एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है।

और कुछ लोग जो हैं उसके अंदर जा रहे हैं और कुछ लोग जो हैं उसके पास खड़े हुए हैं साथ ही एक कार और एक बाइक भी यहाँ पर खड़ी हुई हैं।

और उन्ही के ऊपर एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है जिसका रंग व्हाइट ब्लैक है और एक पेड़ की डाल दिखाई दे रही है कुछ शॉपस दिखाई दे रही हैं जिस पर लोग खड़े हुए हैं।

यहाँ एक ओटो खड़ा हुवा है जिसका रंग ब्लेक है तथा उसी के पास कुछ बाईकस खड़ी हुई हैं ओर कुछ लोग --

लोग खड़े हुए हैं और एक बड़ा-सा मेन गेट है एक बिल्डिंग का जिस पर बड़े से पोस्टर पर लिखा हुआ है भारतीय स्टेट बेंक| जहाँ पर लोग अन्दर आ रहे हैं और जा रहे --